या आटो खड़े हुए ओर पीछे कुछ आदमी है ओर मोटरसाइकिल दिख रही ओर कुछ कार --

दिखाई दे रही है और दूर एक घर दिख रहा है जो हरा है और पीछे बहुत से पेड़े --

ऊंचे-ऊंचे दो पहाड़ दिख रहे है ऊपर आसमान दिख रहा है।

पतथरि लगे हुए है ऊपर उ पीला पोस्टर लगे है जिसमे काले--

दो आदमी खड़े हुए है ओर ऊपर बड़ा पोस्टर लगा जिसमे एक चाय वाला ग्लास छाप है।

फूलों की बहुत सारी माला लटक रही है ओर साइट मे कुछ --

सब छपा हुआ है और नीचे--

सामने एक नदी दिख रही जिसका पानी पीला मटमैला दिख ओर बीच मे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे है ओर बीच--

कही और साइड मे खंबा हो रहै हैं जारिस नीले--

सामने एक रेल दिख रही है जो नीले और बीच मे हरे कलर की है इसमे बहुत सी खिड़कियां है।

ओर सफेद आसमान दिख रहा है।

ब्लैक एंड व्हाइट है जिसकी दोनों सब जगहै हर घास पीली और कही ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है ओर दोनों साइड बहोत सारे --

सामने एक बस दिख रही है जो की सफेद कलर की ओर नीले कलर की है उसके सामने कुछ आदमी खड़े हुए है।

डाली दगल पकड़े हुए जिसमें पत्ते भी लटक रहै है ओर नई --

और सफेद थे और ब्रिज बना हुआ है इसमे मोठे - मोठे गोल पाये लगे हुए है ऊपर --